उस मंदिर में कितनी कितनी कितने सारे भगवानों की मूर्तियां थी लगी हुई।

याल जाल हम लोग घुमने गए थे।

यार जब अपन लोग घूमने गए थे --

यार हम जब लोग घूमने गए थे --

तो सोच रहे दाल जाल में मछली फंसी आए कुछ भी --

आओ यार खेलने का मन कर रहा। देखते हम सब वॉलीबाल भी आती है क्रिकेट भी आता है और राकेट भी आता है।

यार हम दो लोग मार्केट गए थे तो मार्केट में काफी अच्छी दुकाने थी।

यार मैं एक शादी में गया था यार।